गेट है जोकि ब्लैक कलर का है और उसके अंदर एक वाइट कलर कि का कार खड़ी है और रोड के ऊपर एक आदमी जा रहा जाता हुआ दिखाई दे रहा है जोकि ब्लैक कलर की गाड़ी पे बैठा है ब्लू शर्ट पहना है ऊपर हेलमेट लगा --

उसके बगल में भी एक प पतियों जैसा कुछ है और उसके पीछे एक सोफा है जोकि पीले और व्हाइट कलर का रंग है और उसके पीछे दिवार है जोकि --

पेड़ दिखाई दे रहा है। आसमान दिखाई दे तीन क कलर की दिखाई दे रही है। एक व्हाइट दिखाई दे रहा है। एक ब्लैक दिखाई दे रहा है। ब्लू दिखाई दे रहा है और मंदिर के अंदर झंडे दिखाई दे रहे हैं कई कलर के।